पूरा अंदर हरे हरा-हरा पेड़ सा बहुत बड़ा-बड़ा बहुत अच्छा लगा दिखने में पुराना हवेली है।

यहाँ पे एक मंदिर है पंडित जी है साईं बाबा का फोटो है अच्छा लग रहा है दिखने में और यहाँ पे आए हुआ पंडित जी है और बहुत अच्छा लग रहा मंदिर देखने में --